जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे चार लड़के हैं वो--

ये मुझे वॉल पे बनी हुई कुछ पेंटिंग दिखाई दे री है इसे मूर्तियां बनी हुई है।

तो डॉक्टर ने शर्ट पेहना वो व्हाइट कलर का है जो लेडीज ने शर्ट अ अपना सलवार कमीज पेहना है वो ब्ल्यू कलर का है अ पीछे जो दीवार है वो वाइट कलर की दिख --

अ व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है और यहां पे जो एक बाथरूम भी मुझे दिखाई दे--

जो जोगा कर रहे है जो सभी लाल मैट के ऊपर बैठे हुए है कुछ नीले मैट के ऊपर बैठे है।

बहोत सारे बील जो टंगे हुए है जो गाड़ियों के बील होते है और एक पी_सी टेबुल पर रखा गया है जिस पी_सी में कैमरे जैसे--

अअ व्हाइट ब्लैक चप्पल से यहां पर टंगी हुई हैं जो शीशे के अंदर टंगी हैं बहोत अच्छी लग रही हैं।

मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे दो दुकान है और एक सड़क पे दो दुकानें हैं।

एक दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान दूसरी दुकान पे किराना का समान है इलेक्ट्रॉनिक वाले ने हीटर जैसे रखा हुआ बहोत सारा जोकि एस_बी इलेक्ट्रिकल नाम से है।